एक बा बाईक देखे मे कलिया रंग के लगाता इ बाइक खुलेल बा।

एक ठेले के अदंर पाठ को बाहर निकलवा एक थित खुलल बा

इस तस्वीर में चार आदमी बा जे में से एक आदमी बइठल बा त तीन आदमी खड़ा बा | ई लोग कुछो बनवता पार्टी चाहे शादी उदी में के एगो टेबल पे इ लोग रख के बनवा तारु ओने एगो घरो बा |